उसने स्पेकस भी लगाई हुई है और--

यह बहुत सारी लेडिस हैं।

एक बेड की चद्दर वाइट कलर की है और दूसरे बेड की चद्दर --

कोचिंग सेंटर में बैठे हैं।

ग्राउंड में हरी घास--

यह मसाज करने के लिए--

जनता डायरी है इसमें--

पहाड़ों की तस्वीर है।

पहाड़ ऊंचे नीचे हैं।

यह शूज की दुकान हैं।

और सामने व्हीकल भी खड़े हैं।

ऊपर खड़ा है आदमी ने ब्लू शर्ट पहनी--

और सामने कुछ लोग खड़े हैं।

काफी व्हीकल्स खड़े हैं।